मुझे इस चित्र में दो पुरुष दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में दो पानी की टंकी दिख रही हैं।

मुझे इस चित्र में एक ए_टी_एम दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में बहुत सारी कुर्सियां दिख रही है।

मुझे इस चित्र में कुछ पुरुष दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में शर्मा लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ बुके रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में लाइट जलती हुई नजर आ रही--

मुझे इस चित्र में एक पलंग नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक ऐसी नजर आ रहा हैं।

मुझे इस चित्र में एक ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक कचरे का डब्बा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में पीले रंग के कपड़े दिख रहे--